बहोत बड़ा जंक्शन है। देखने मे बहोत सुंदर है।

बहोत ही भीड़ लगा है इस जंक्शन पर बहोत ही लोग खड़े हैं।

बीच-बीच में जाने का रास्ता भी है और बहोत अच्छा लग रहा है। बहोत सुन्दर स्कूल है।

मेरिज हॉल है। मेरिज हॉल --

बहुत सारा सजावट हुआ है। इसके ऊपर उम फूल पत्ती भी म्म रखा गया है।

बाल्टी भी ईक रखा गया है और इस एटीएम में कोई है तो नहीं --

बहोत ही सुंदर बहोत ही अच्छा दिख रहा है। देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

बहुत अछ बड़ा स्टेशन । यहाँ पर पब्लिक भी बहुत ज --